गेंदा का फूल है मौसम्मी का पेड़ है।

डी.जे. की दुकान है बहुत से अ लोग खड़े हैं।

नीला पोस्टर लगा हुआ है। पेड़ है खजूर के पेड़ हैं।

पीले हैं बैगनी है लाल है काले हैं फर्श है।